एक बिल्डिंग के बाहर गिटी और सीमेंट भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में पेंट का दुकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर बहोत सारे पेंट का डब्बा रखा हुआ है।

सामने में दो बड़ा बड़ा आईना भी लगा हुआ है।

दुकान का छत टीना से बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर मैं बंबू और टीना से बना हुआ घर दिखाई दे रहा है।

सामने में दो गाड़ी भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक लंबा सा ब्रिज नजर आ रहा है।

जमीन पर एक लंबा सा पाइप भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग का एक कमरा का हिस्सा दिखाई दे रहा है।

और सामने में एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में नदी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा इलेक्ट्रिक वायर्स टंगा हुआ है।

सामने मे लाल कुर्सिया भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग का एक कमरा का हिस्सा दिख रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा येलो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जमीन पर कई सारे कचरा भी बिखरा पड़ा हुआ है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा लगा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में गोल्डन पैगोडा का दे रहा है।

सामने में एक स्टील का पोल दिखाई दे रहा है।

दीवार का बाउंड्री बना हुआ है।

सामने वाले ग्लास के अलमारी पर बहुत सारे चश्मा भी रखा हुआ है।

टायर के सामने कपड़ा भी रखा हुआ है।

सामने में बहोत सारा कार्टून का डब्बा भी रखा हुआ है।

और आस पास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

सामने में बहता हुआ नदी भी दिखाई दे रहा है।

जिस पर वेलकम टू सिलुक विलेज क्लीनेस्ट विलेज ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक लिखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बिल्डिंग का एक कमरा का हिस्सा दिखाई दे रहा है।